मुझे यहाँ पर भारत एक दुकान दिखी जहाँ पर --

जहाँ पर अ कुछ कुछ पब्लिक बैठी हुई दिखाई दे रही है ।

मुझे यहाँ पर मछली मार्केट दिखाई दे रहा है।

कुछ उम आइड साइड में हरयाली सी है आगे एक मंदिर है जिसपे ऊपर --